लैब पे बहुत सारा समान रखा हुआ है ये सब वुडन का हैं।

और आदमी ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है उसके पास एक टब पड़ा है टब में शायद कोई कपड़ा है पीछे एक आदमी खड़ा है।

और उन्होंने वो कुर्सी के पर बैठे हुए हैं।

जो कि कई घास लगी हुई है कहीं पौधे एक लंबा सा खंबा भी है ऊपर से बिजली की तारे जा रही हैं।

उसने गले में एक ताबीज भी पहन रखा हैं।

उस एक स्कूटी पर एक आदमी भी बैठा हुआ है।

पार्टी का दफ्तर है यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ हैं।

जिस पर महिला की फोटो बनी हुई है महिला ने--

एक आदमी ने व्हाइट शर्ट और सफेद पैंट पहनी हुई है।

दोनों के हाथ में मोबाइल है वो बवाइल में कुछ देख रहें हैं उनके सामने एक मशीन पड़ी हुई हैं।

चित्र में एक ईमारत है जिस पर पिंक छत लगी हुई है।

जिस पर एक आदमी जा रहा है और एक गाड़ी भी खड़ी हैं।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

आगे घास से रास्ता भी बना हुआ है।

उसके बाहर एक बैत का झूला लगा हुआ हैं।

इसमें कई तरह की चेयर्स रखी गई हैं।

यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं।

जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं।

उसके पीछे बहुत घने-घने पेड़ भी हैं।

बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं एक हरे रंग की टोकरी भी रखी हुई हैं।

और बहुत सारे कमोड टाइप रखे गए हैं।

बैंक का बोर्ड मैरून कलर का है बाहर एक गाड़ी भी खड़ी हैं।

बैक लाइट दिख रही है और सामने एक घर हैं।

और उसके पीछे एक घास की दीवार बनाई गई हैं।

पर बहुत घर बने हुए हैं जो कि पहाड़ों पर बने पड़े हैं और एक आदमी खड़ा है जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई हैं।

उन्होंने अपने नीचे मैट भी बिछा रखे हैं।